लोग और ये एक मॉल है जिसमें की सारे तरह के कपड़े और सारे समान मिल रहे हैं।

और यहाँ पे काफी बा गाड़ियाँ भी लगी हुई है।

और यहाँ ये रेस्टुरेंट जो है वो काफी बड़ा और काफी सुंदर है। इस रेस्टुरेंट का जो कलर है वो येलो कलर है फ्रंट पे--

और इस्पे वुड की डिज़ाइन की हुई है जिसपे उसका नाम लिखा हुआ है।

फिश मिल रहे है और लोग इस फिश को खरीदने के लिए लाइन के लाइन आए हुए है। लाइन में लगे हुए है और इस फिश को खरीद रहे है।

और यहाँ पे काफी सारे ब्रांडेड कपड़े मिल रहे है जैसे कि प्ले बॉय जॉकी ।

यहाँ पे एक लेडी बैठ करके कुछ समान खरीद रही है और इसका जो फ्रंट का गेट है वो कांच --

जो की काफी बड़ी है और इसके गेट जो है वो नीले रंग की है।

और बोहोत सारी औरते जो की साड़ी पेहने हुए इस स्टेज पर है और उसके हाथ में कुछ गिफ्ट्स है जो की पिंक कलर के--

यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक बुक और मैगज़ीन सेंटर है।

दो कलर रंगो में है वाइट और ब्लैक |

यहाँ पे सारे राशन और भी सारे सामान घर के --

और एक आदमी जो है वो वाइट - रेड कलर की टी-शर्ट पेहने हुए बैठा हुआ है और एक आदमी उधर से --

और ये शॉपिंग मॉल बिलकुल भी खाली है।

कि ट्रे कि कांच कि बनी हुई है जो कि बाहार से भी इसके अंदर कि सारी चीजे देख सकते है काफी अच्छे तरिके से --

और ये काफी बड़ी कंपनी है और इसके जो दूसरा इसके जो सुधा प्रोडक्ट्स है जो आल ओवर इंडिया में--

और ये इसके बाहर की ये इसके बाहर का एरिया है और ये मार्केट --

ये एक बुक स्टोर है जिसका नाम कॉम्पिटिशन किंग है और यह ऑनलाइन बुक स्टोर है यहाँ पे आप --

और यहां पे एक आदमी है जो कि ब्लू कलर के यूनीफॉर्म्स में है और उन्होंने मास्क लगाई हुई है।